सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं और यहां पे ये सर है एक--

नीचे पार्क है और यहां हरे भरे रंग का पार्क है यहां पे।

टाइल लगी हुई है और यहां पे--

यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पे ये जिम है यहां पे ये--

लड़के ने सफेद रंग सफ़ेद लड़के लड़कीने--

छोटा सा घर दिख रहा है यहां पे--

यहां पे बाल काटे जाते हैं और यहां पे ये पानी का वो रखा हुआ है जिससे पानी छिड़का जावे है और यहां पे आप देख सकते हो।

पी एन्ड डी लिखा हुआ सेंटर फेज टू --

बहुत सी झाड़ियां खड़ी हुई हैं यहां पे।

पहले संतरी फिर सफेद फिर हरा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

कीकर लगी हुई हैं कीकर सुखी भी है और हरी भी है और यहां पेे सारे ढाल के पेड़ पौधे दिख रहे हैं।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

और ये गेट से एंट्री लिखी हुई है ये आदमी गेट के बाहर जा रहा है इस आदमी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहेन रखे और --

यहां पे बाइक खड़ी हुई हैं यहां पे--

यहां पे आप देख सकते हो--

यहां पेन रखा हुआ डायरी रखी हुई है यहां पर आप देख सकते हो।

यहां पे आप देख सकते हो ये एगो रथ है ये डॉक्टरानी है--

और यहां पे आप देख सकते हों एक आदमी खड़ा हुआ है।

व्हाइट कलर की बू शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी है।

यहां पे गेट भी लगे हुए हैं झांकियां भी लगी हुई है यहां पे लाइटिंग लगी हुई है।